सामने औरतें सब्जियां धोकर काट रही है--

बहुत सारी औरतिया अलग अलग बैठकर अलग अलग सब्जीयों को धोकर काट रहीं हैं।

खड़ा है पानी की टंकी के पास में।

घरों की छतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।

कोई भवन है जिसके ऊपर पंजाबी अक्षरों में लिखा हुआ है।

पीछे की तरफ कुछ और गाड़ियां वाइट कलर की--

पिक्चर में एक व्यक्ति सेल्फी लेते दिखाई दे रहा है सेल्फी लेने वाला व्यक्--

यह एक शैलून का पिक्चर लग रहा है। शैलून --

सामने पार्किंग है पार्किंग में एक जनरेटर हैं।

के सामने कुछ छोटे गमलों में पौधे रखे हुए हैं बिल्डिंग के एंट्रेंस के दरवाजे शीशे के बने --

श्रवण रेडिएटर रिपेयर्स की दुकान सामने दिख रही है।

सामने लाला लाजपतराय अस्पताल का दृश्य है .

पीछे एक काउंटर दिखाई दे रहा है काउंटर पर एक चेयर रखी हुई है।

केरला होटल वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट के सामने--

बहुत प्रकार के पैकेट्स रखे हुए हैं ग्रीन --

दिख रि जनरल स्टोर के ऊपर जय साईं जी लिखा हुआ--

यह किसी बिल्डिंग का कोरीडोर है बरामदा है।

कुछ ग्रॉसरी आइटम्स पैकेटस में रखे हुए--

ग्रोसरी के सेल्फ के आसपास कोई भी कस्टमर नहीं--

पार्क में हरे भरे ग्रास है घास है और कुछ हरे भरे पौधे भी--

पार्क में एक बड़ी सी लाइट लगी हुई है।

टीन शेड के नीचे खड़ा हुआ है।

मीटिंग की टेबल पर फूल की मालाएं रखी हैं सभी लोगों में से एक महिला है।

कार्यक्रम के लिए टेंट का इंतजामत--

तंबू को सहारा देने के लिए नीले पोल्स का इस्तेमाल किया गया है।

पूरी ब्राउन सतह है ग्राउंड में एक बड़ी लाइट लगी हुई है।

दो लोग एक साइकिल चलाते हुए भी दिखाई दे रहे--

दिन का समय है ग्राउंड के पीछे बड़े हरे भरे वृक्ष दिखाई दे रहे हैं।